सामने बहुत बड़ा हॉल है जहा पे बहुत सारी अलमारिया है उन अलमारियो मे बहुत सारी किताबे रखी हुई है।

बड़ा हॉल है हॉल मे बहुत बड़ी खिड़की लगी है। जिसमे काच लगा हुआ है खिड़की--

इसे रास्ता है रास्ते के दोनों साइड नदियाँ है दोनों नदियोंमें नाव चल रही है। और--

तालाब के पास एक बाउंड्री है और रोड बनी है और रोड के किनारे छोटी छोटी घास है।

सामने एक तालाब है। तालाब के किनारे बहुत छोटी- छोटी नाव रखी है।

व्यक्ति यों मेसे एक पुलिस की ड्रेस पेहना है और उसके सामने एक वाहन रखा है।

बाउंड्री है। बाउंड्री के पास बहोत सारे पत्तर रखे हुए है।

सामने एक बड़ा तालाब है। तालाब के किनारे बहुत सारी नाव रखी है। उन नाव मे बहुत सारी कुर्सियां है।

बहुत बडा तालाब है तालाब के किनारे बहुत सारी नाव खड़ी है ऊन नाव में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

और एक साइड छोटे-छोटे पौधे और गंदगी डली है।